सामने तीन शीशे लगे हुए हैं।

इस फोटो में बसंत डेयरी फार्म को देखा जा सकता है।

सामने पानी का बोतल भी है।

रात का समय हो रहा है।

बच्चे दरी पर बैठे हुए हैं।